वो अंदर में कुछ आदमी खड़े बैठे हुए हैं।

और सामने एक तार का पेड़ है।

सामने टेबल पे कुछ प्लेट रखे हुए हैं।

इसका इंजन खुला हुआ है और इसमें काम हो रहा है।

जिसमें कि गेहूं चावल और भी बहुत तरह का इसमें सामान बिकता है।

जिसमें की बड़े-बड़े इसमें बेंच लगे हुए हैं।

उसके पीछे एक रेड कलर का चेयर भी लगा हुआ है जोकि खाली पड़ा हुआ है।

यह फोटो एक मैरिज हॉल का है।

यह बहुत अच्छे लग रहे हैं।

और वो आदमी का चेहरा ढका हुआ है।